जिसकी मुझे खिड़कियां और दरवाजे भी--

छोटे छोटे फूल लगे हुए हैं और हरी भरी घास भी नजर आ रही है यहां पर मुझे बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे कुछ चेयर और टेबल्स भी दिखाई दे रहे हैं।

जहां पे मुझे बहोत सारी मूर्तियां दिखाई दे रही है और कुछ फोटो फ्रेम नजर आ रही है।

टेबल के ऊपर मुझे बहोत सारे बुक्स और--

मुझे बहोत सारी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं।

बड़े बड़े पेड़ पौधे और झाड़ियां भी--

यहां पे बहोत सारी लाइट्स जली हुई है।

सभी बेडो पे व्हाइट कलर की बेड सीट और पिलो नज़र आ रहे हैं और एक ब्लैंकेट भी दिखाई दे रहा है।

शीशे के दरवाजे और खिड़कियां भी मुझे यहां नज़र आ रही है और एक चेयर भी यहां पे नज़र आ रही है।

यहां पे मुझे स्कूल की बिल्डिंग के साथ एक गेट नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक हॉल नजर आ रहा है।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

आस पास मुझे छोटे छोटे गेड और झाड़ियां भी दिखी दे रही है और बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

इसमें किसी चीज की तस्वीरें हैं बनाई गई हैं और कुछ हैं जानवरों की--

मुझे हरे भरे पेड़ पौधे और झाड़ियां भी नजर--

लोहे के पोल पे मुझे बहोत सारी तार नजर आ रही है।

मुझे यहां पे बैठने के लिए कुछ बेंचेस भी नज़र आ रहे हैं और कुछ फूल भी नज़र आ रहे हैं।